काफी सारे टूल रखा हुआ है जिससे गाड़ी सुधरी जाती है।

कत्था कलर का कारपेट बिछा हुआ है पेड़ पौधे लगे हुए है और ऐसी --

एक ब बड़ी बिल्डिंग दिखाई दे रहा है उसमे एक बड़ा पेड़ भि दिखाई दे रहा है बिल्डिंग में गुलाबी --

कलर से बिल्डिंग होता हुआ दिख रहा है एक कार आती हुई दिख रहा है एक कार दिख रहा है।

उसमें उसके बगल में एक पलास का पेड़ लगा हुआ दिख रहा है।

दो लड़के मंदिर के ऊपर जाते हुए दिखाई दे रहा है।

पर्दे दिखाई दे रहा है लाइटिंग दिखाई दे रहा है एक लड़का जाता हुआ दिखाई दे रहा है।

बैंक दो मंजिल का दिखाई दे रहा है ऊपर वाले मंजिल में तीन दरवाजे --

उसमे यु के लीपटेस का पेड़ लगा हुआ दिखाई दे रहा है।

सीढ़ियां पांच छह बनी हुई दिखाई दे रहा है ऊपर छत भी बना हुआ है।

एक भगवान गणेश का प्रतिमा पंडाल में बैठा हुआ दिखाई दे रहा है।

पानी खौलता हुआ डैम का दिखाई दे रहा है।

छोटे-छोटे उसमें पौधे लगे हुए दिखाई दे रहे हैं बड़ा पेड़ लगा हुआ दिखाई दे रहा है।

पेपर से रैप दिखाई दे रहा है एक कटोरी काले रंग की दिखाई दे रहा है।

एक आदमी टोपी लगाए हुए दिखाई दे रहा है और कुछ लोग वहां एक डब्बा --

हैवी गोल का रखा हुआ दिखाई दे रहा है ऊपर एक बल्ब जलता हुआ दिखाई दे रहा है।

पानी नीले रंग का दिखाई दे रहा है उसके ऊपर लोगों के नहाने के बाद --

लेटने वाली चेयर दिखाई दे रहा है और इंग्लिश खप्पर का मकान दिखाई दे रहा है।

फोटो खींचता हुआ दिखाई दे रहा है कुछ बड़े पेड़ों की छाया भी दिखाई दे रहा है।

एंगल में सूट टंगा हुआ दिखाई दे रहा है।

उस ट्रेन का रंग लाल रंग का दिखाई दे रहा है छोटे-छोटे टायर लगे हुए दिखाई दे रहा है।

और नीले रंग की कुर्सियां भी दिखाई दे रहा है बड़े-बड़े सूखे लंबे पेड़ लगे हुए दिखाई दे रहा।

नदी में चार-पांच नाव रखा हुआ है।

एक होटल का दिखाई दे रहा है जिसमे युके लीप्ट्स के पेड़ लगा हुआ दिखाई दे रहा है।

एक बिजली का खंबा लगा हुआ दिखाई दे रहा है और फूलों का पॉट रखा हुआ।